इस साइड में एक पेड़ है के घर के इस पार एक बड़ा सा घंटी है जो उपर में छोटा सा घर बना है फिर घर के उस पार एक और छोटी सी बिल्डिंग है।

और आगे की ओर देख रहे है जो स्वेटर पहना है ब्राउन एक पंखा दिख रहा है।

और नीचे एक पोस्टर है जो विद्या लंकर क्लासेस नाम का है जो रेड कलर का है और नीचे बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है और ये बाइक में एक शीशा दिख रहा है और साइड में एक --

ये इमेज में मुझे बहुत चोड़ी सी घर दिख रही है जो--